तीन बच्चे हैं एक बच्ची है और वो एक दो बच्चे ब्लैक कलर के वर्दी पहने हुए हैं एक बच्ची है जो--

पीले रंग का ऑरेंज कलर का और अगल बगल से वो रेलिंग से घेरा हुआ है और उसके पीछे--

ये चर्च जैसा है दिख रहा है कि यह चर्च है चर्च का इसमें --

मूर्ति के बीच में एक पिंक कलर का आदमी खड़ा है और बहोत उस क आगे बहोत सारे लेडिसे बैठी हुई है।

क्योंकि इस ऑफिस में केबिन में फूलों से सजाया गया है गुब्बारों से सजाया गया है तीन चार ठो चेयर रखा हुआ है।

ये कोई अ मालूम पड़ रहा जैसे पार्क जैसे की एरिया है।

जा रही हैं और उसके अगल बगल बहोत सारे पेड़ पौधे--

पोस्टर लगा है एक लेडिस का जो सूट पहनी हुई है।

वहां पे एक चेयर लगे हुए है जो कि वह पे कुछ आदमी डिस्कस कर रहे हैं आपस में।

वेह तीन गुम्बदें दिख रही हैं और उसीके रोड के जैसे सामने--

पौधे लगे हुए हैं बहुत ही खूबसूरत दृश्य है।